साइड में देख लो रेलवे का ब्रिज भी है और इधर --

और बहुत ही अच्छा किया हुआ है सामने पार्किंग लगा हुआ है बस टाइप का लग रहा।

तो देख ही रहे होंगे मछली है ढेर सारा इसको बोला जाता है। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कलर --

पे दिख रहा होगा आप लोगों को।

कुछ भी एक टेम्पल टाइप का। देख ही रहे होंगे। बहुत अच्छा सिल्वर कलर का टाइल्स बिठाया गया है और --

और साइड साइड पे जो रोड है वो ब्लैक है और अपर से थोड़ा व्हाइट है।

सामने का तो सारा पूरा ग्रीन ही दिख रहा है। उसके बगल में आप थोड़ा दूर का ग्रीन एंड ब्लैक टाइप में दिख रहा होगा।

तार सारे दिए हुए और बीच में बहुत अच्छा स्पेस खाली है।

और सामने दिख रहा है बहुत अच्छा आरकीटेकचर बना हुआ बहुत अच्छा सामने--

ब्लू कलर क --

और रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का अपोजिट साइड आपको दिख ही रहा होगा रेलवे स्टेशन मालगाड़ी का डब्बा भरा --

और उनके चैम्बर टाइप के बने हुए घर-वर बने हुए हैं।

रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है। मे बी पिंक कलर का पहना हुआ और वो खड़े हुआ सब कोई उसी को वॉल आप देख रहे होंगे पूरा व्हाइट कलर का वॉल है नीचे थोड़ा ग्रीन टाइप का वॉल बना हुआ टाइप का है।